शर्ट कपड़े रखे हुए हैं ऊपर में खिड़कियां लगी हुई हैं बगल में एक और रैक टाइप की बनी हुई--

पीछे में एक बिल्डिंग और है जो कि वाइट कलर से पेंट की गई है रात का समय है ऊपर आसमान पूरा काला है बगल में लाइटें जल रही है बहुत सारी।

उसके नीचे एक आदमी बैठा हुआ है वह कुछ उसको ठीक-ठाक कर रही है आगे से एक आदमी है जो कि रेड टी-शर्ट पहनकर उसी कार के तरफ देख--

इसमें हैंगर टाइप के भी बहुत कुछ लगे हुए हैं इसमें लाइट लगी हुई है लाइटें जल रही है यहां पर लिखा हुआ है सी_ ए_ एन_ आई_ एस _एच तनीसा लिखा हुआ है।